और उसके ऊपर एक और बोर्ड लगाया गया है जो दूध का है।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

इस पिक्चर में मुझे एक रथ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

और बहुत सारे स्टूडेंट भी दिख रहे हैं और यह सब योगा कर रहे हैं।

और बैलून का कलर रेड और व्हाइट कलर हैं।

और मुझे एक चेयर भी दिखाई दे रहा है और उस चेयर का कलर ब्राऊन है।

और पेड़ वगैरा भी दिख रहे है और मंदिर व्हाइट कलर का है।

और एक आदमी ने भी छोला लिया हुआ है और प्याज वाज भी डाला हुआ है।

और यह बलून का कलर व्हाइट येलो ब्लैक है।

और इस एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और एक सुभाष चंद्र बोस का भी पोस्टर दिखाई दे रहा है।

और वो बहुत सारे हैं और मुझे एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है और मुझे काउंटर दिखाई दे रहा है।

पंखे भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे बोल भी दिखाई दे रहे हैं।